खूबसूरती से जो है ये चीज़े मिल रही है यहा पे जो हाथ से बनी हुई है आजकल एसी चीज़े मिल ना काफी मुश्किल की बात रहती है मसक्त की बात नहीं मिलती ये जो वुडन चीज़े है वो सब समझ मे आ रही है यहा पे एक आदमी--

और यहा पे लोग आते भी है तो एसा लगता है के मतलब थोड़े देर के लिए आए और गए यहां पे--

पास के जो लोग होते उसको खरीद के जो की कभी महक आए जोकी काफी अच्छी बात है और यहा पे वही नज़र आ रही है। काफी ज्यादा नज़र--